गेट भी है बहुत बड़ा सा कार भी एक है मूर्ति भी लगा है लाइट भी लगा है।

और इसमें बहुत बड़ा बड़ा मशीनें हैं पेड़ पेड़ भी उसके सामने है।

आ सामने कुछ व्यक्ति हैं उधर दिखाई दे रहे हैं नजर आ के जा रहे हैं और बगल में तार भी है।

पीछे बोर्ड में लिखा गया है बारह पर्सेंट छूट पांच पर्सेंट छूट अठारह पर्सेंट छूट।

एक सर भी यहां खड़े हुए हैं और बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं फील्ड में।

कैलकुलेटर हैं बेंच हैं।